ये एक कार वर्कशॉप की फोटो है जहाँ पर एक मैकेनिक एक रेड कलर की कार को रिपेयर कर रहा है और यहाँ पर बहुत सारी कार रिपेयरिंग टूल्स रखे हुए हैं और ये कार दिया हुआ है और यहाँ पर एक शेड में बनी हुई है ये एक वर्कशॉप की फोटो दिखाई जा रही है।

और ये अंदर में बहुत सारी लाईटे दिखाई दे रही हैं और कुछ काउंटर लगे हैं।